इन्हें एक मेहमान ऑटोमोबाइल इसके नीचे भी मोबाइल सेंटर से है ।

उधर धूम धाम दिखाई दे रहा है उधर थोड़ी दूर-दूर तक पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है ।

ये एक मंडप सा जैसा दिखाई दे रहा है काफी अच्छे से सजाया गया हुआ है काफी कलर्स की गयी हुई है ब्लू कलर कुछ ज्यादा ही है ।

काफी बड़ा दिखाई दे रहा है ।